जिम का सीन है। यहाँ पर मॉडर्न प्रकार की मशीनें लगी हुई हैं। डंबल्स रखे हुए हैं। ग्लासेस भी लगे हुए हैं।

यहाँ पप मैनेजर बैठता है जो पैसे का लेन देन भी करता है। सारा काम यही से होते हैं। ये रिलायंस ग्रुप का पेट्रोल पंप है।

यह डेंटल क्लिनिक है यहाँ पर दाँत नाक कान से संबंधित इलाज किए जाते हैं।

यह रिलायंस पेट्रोल पंप है। यहां पर एक जेसीबी फ डीजल लेने आई हुई है।

इंडिया फार्मेसी वालों का कॉलेज है। ये सन इंडिया फार्मेसी बहोत पुरानी कंपनी है जो दवाईयां बनाती है उसी ने अपना कॉलेज स्टार्ट किया हुआ है।

कोच रोड पर एक छोटी सी खाली जमीन है जहाँ पर पानी भर गया है। यह जो तालाब क तालाब सा दिख रहा है।